गलीचा भी बिछा हुआ दिखाई दे रहा है बाहर के तरफ कुछ वायर्स भी दिखाई दे रहे है ।

इसमें एक नदी दिखाई दे रही है सामने के तरफ ब्रिज है ब्रिज पर एक लड़का और उसकी साइकिल खड़ी हुए दिखाई दे रही है ।

वो चस्मा भी लगाए हुए है ये एक ब्रिज का फोटो है क्युकी साइड मे नदी दिखाई दे रही है पीछे काफी सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

ये एक मैदान जैसा दिखाई दे रहा है मैदान मैं एक अंकल झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे है।

अ और एक अ टावर भी है।

ये एक लाइब्रेरी या फिर बुक स्टोर जैसी दिखाई दे रही है।